इस तस्वीर में हमें एक स्कूल का गेट दिखाई दे रहा है जिसका नाम है यूनिक पब्लिक स्कूल एस आई के आर आई ।

एक आदमी के बाल काट रहा है उप ऊपर की तरफ एक पंखा भी है जो की सफेद रंग का है।

इस तस्वीर में हम देखे तो हमे बहुत सी बकरियां दिखाई दे रहीं हैं जो कि घास खा रही हैं।

इस तस्वीर में हम देखे तो हमें कुछ लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें से कुछ लड़कियाँ भी हैं और कुछ लड़के भी।

इस तस्वीर में हमे एक अक्ष दिखाई दे रही है जिसमें कुछ टेबल्स लगी हुई है पीछे की तरफ एक खिड़की दिखाई दे रही है जो की बंद है।

और एक माचीस दिखाई दे रही है और मोमबत्ती भी है और चाकू भी दिखाई दे रहा है ।

और वह तरह-तरह के लैंप वगैरह बना रहे हैं जो कि दीपावली पर सजावट के लिए काम में आते हैं।